और बहुत सारे पेड़-पौधे हरे भरे जंगल देखने को मिल रहे हैं इसमें चार चक्का भी देखने को मिल रहा है।

इसके नीचे फर्श बिछाया हुआ है और इसका रंग सफेद रंग का है और इसमें एगो --

ते प्लास्टर किया हुआ है और इसमें बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं।